अलग-अलग ड्रेस पिन्हे हेय कुछ लोग सेम ड्रेस पिन्हे हेय।

रेनबो से की चारों तरफ घिरा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे --